और ब्लू कलर का भी है पर्दा --

और ये सफेद कलर का सीलिंग है।

और बहुत सारा इंसान्स भी है।

यह एक ब्लू कलर के एस_बी_ई बैंक दिखाई दे रहा है।

यहां में एक स्टोर दिखाई दे रहा है।

और बीच में एक बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारा वर्कर्स है।

और नीचे का फ्लोर सफेद कलर का है एक--

और इस स्तोल का नीचे एक लाल रंग का एक डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

ये एक रेलवे ट्रैक है।